और अ डिनर टेबल है जिसपे लोग खाने के लिए हुए बेठे हुए है अलग अलग डिशेस के साथ और ब्लेक कलर के दो तिन लड़के जो है ड्रेस --

इसको देख कर हम यह पता लगा सकते हैं कि यहा एक बहोत ही सुंदर सी पिक्चर है यहा एक नाव है यहाँ पर कई सारी नावे नजर आ रही है आसमान बिलकुल साफ नजर आ रहा है ।

पिक्चर को देख कर हम ये पता लगा सकते है की यह एक बहोत ही सुंदर सी बुक स्टोर है यहाँ पर बलून काफी सजायी गयी है यहाँ पे काफी मात्राए मैं चेयर भी टेबल भी रखी गयी है जो की शानदार है।